मेरे सामने एक फोटो दिखाई दे रही है जो एक बड़ी बिल्डिंग की फोटो है।

मेरे सामने एक तस्वीर आई है जो एक गार्डन बना हुआ है।

छत के ऊपर के पेड़ आए में यहां पर बैठकर अपना समय को--

खेत होती है और बहोत ही अच्छी फसल दिखाई दे रही है सामने डूंगर भी है और इधर कुछ मकान का काम चालू भी है।

जोर से बच्चे अपना प्रोजेक्ट का कार्य कर रहे हैं और प्रोजेक्ट --

मेरे सामने एक फोटो का तस्वीर आई है।

मेरे सामने एक फोटो हैं जिसके अंदर खाना रखा हुआ हैं।

जिसके अंदर ई रिक्शा दिखाई दे रहा है और एक अंकल जी उस वहां पर --

पुस्तकालय जयपुर की है ये कार्यालय जयपुर में स्थित है।

की है यहां पर बहुत सारा पानी है और देखने के लिए लोग आए हुए हैं ऊपर पुलिया बनी हुई है।

सब्जी ठेले एवं मजदूर संघ के लिए है यहां पर बहुत अच्छी रेट में --

मेरे सामने एक फोटो दिखाई दे रही है जो की एक नर्सरी या पेड़ पौधों के लिए --

है यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं।